इस गार्डन में एक घर भी दिख रहा हैं।

इस बिल्डिंग पे बहोत सारी खिड़कियाँ है।

दिख रहा है कि ये एक कार्यालय का बाहर का हिस्सा है।

स्टेशन पे एक ट्रेन आ रही है।

की रोड साइड कुछ पेड़ खड़े हुए है।

और रोड के दूसरे साइड के_सी करके एक बोर्ड लगा हुआ है।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

ऊपर इंटरनेट के ऑफिस है एक आदमी बाहर खड़ा है।

मुझे इस चित्र में एक हॉल नजर आ रहा है ये हॉल योगा का है।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

इस महल के दरवाजे के बाहर एक ग्रीन कलर का गार्ड रूम है।

कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं।

और सामने एक टी_वी पे शो चल रहा है।

उसके ऊपर बंपर कार्डस करके लिखा हुआ है।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

मुझे इस चित्र मे एक ब्रिज नज़र आ रहा है।

गार्डन के पीछे दो बड़ी टॉवर्स दिख रही है और कुछ बहुमंजिला इमारतें है।